यहां पे जो है एक कंप्यूटर की लैब बनी हुई है।

जहाँ पे ये दुकान बनी हुई है दुकान में पंखा भी लगे हुए हैं।

यहाँ प जेहे इ बस आ रही है और आदमी खड़े हैं यात्री खड़े हैं जहाँ पे ये बस स्टैंड बनवाया हु --

इते क्रिकेट वाले मौडा- मोड़ी क्रिकेट खेलते हैंगे जो प्लेग्राउंड है वो बहुत सारे क्रिकेटर बहुत सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे।